बिल्डिंग मे हमे एक खिड़की लगी हुई दिखाई दे रही है जो कांच की है वो सामने हमे रैलिंग दिखाई दे रही है।

इस इमेज में हमे एक मकान दिखाई दे रहा है मकान सफेद रंग का दिखाई दे रहा है।

हमें बिल्डिंग के सामने एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है और स्कूटी भी दिखाई दे रही है।